और वहां चारों तरफ लगी हुई हैं बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं।

वृक्ष और वृक्ष यहां पे लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा ये लग रहा--

और कई सारे लोग यहां पे सामान खरीद रहे हैं।

किया हुआ है और बहोत बड़ा पेड़ लगा हुआ है नीचे उसकी हरी हरी पत्तियां नीचे को आ रही हैं।

बनाया हुआ है और यहां पे रखा हुआ है।

और ये बहोत बड़ी दुकान बनी हुई है।

लगाया हुआ है। शीशे के दरवाजे लगे हुए है सामने सड़क दिख रही है और ये शोरुम बहोत बड़ा ही और सुन्दर बनाया गया है।

यहां पे एक बहोत बड़े थाल में लीची के गुच्छे रखे हुए हैं जोकि बहोत ही सुंदर लग रहे हैं लीची--

ऊपर पंखे लगे हुए हैं बहुत ही सुंदर तरीके से इसको सजाया--